और ये मॉट बिछाया हुआ है डिज़ायनिंग किया हुआ है इसपे एक लड़की रेड कलर का --

चिकन करी के भरा हुआ है सामान से पैकेट वाले।

और बहोत सारा सामान से भरा हुआ है।

यहाँ घास फूस भी है स्पेस वाली जगह है रोड है.

ये बिग नॉन बुक सेंटर स्टेशनरी कम लिखा हुआ है होलसेल बुक --

पुराने ज़माने के मकान जैसे अंदरसे बाहरसे भी कर्ली गेट है अंदर भी है वैसा ही गेट --

बड़ी बड़ी पत्तिया है और ये बिच में थोडासा जगा है हुए ये काला--

कुछ गाड़ा गया है इसमें खंबा टाईप का सीमेंटेड और ये फूल पत्ते बड़े बड़े दिख रहे है पेड़ पौदे लाल रेड --

और यहाँ पे सब लोग प्लेट में ले ले के भोजन कर रहे है ऊपर से लाईट भी जल रहा है।

साईड में एक घर है और ये फील्ड में पाईप लगा हुआ है और ये अ --

और यहाँ बंदे खड़े है मस्त डिज़ाइन बना करके रखा गया है.

और पीछे बोहोत सारी गाड़िया लगी हुयी है रोड पे।

और ये बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है साईड में और छोटे पेड़ --

ये प्लेइंग अ अ प्लेइंग रूम है ऊपरमे--

अ पोस्टर लगा है ग्रीन कलर की दीवार है निचे टेबल चेयर लगे हुए है काफी खिलौना रखा गया है.

बच्चो के खेलने वाला और ये टेबल और चेयर भी रखा है।

छोटी छोटी घास भी सेटिंग की हुयी है बड़े बड़े भी पेड़ पौधे है।

बहुतही सुंदर फील्ड है फील्ड में बहुतसारी लेडीज है और बच्चे है.

ये बहुत बड़ा नदी है इधर साईड में पूल है बहुत बड़ा सा.

और पूल के निचेसे कुछ पत्थर निकला हुआ है।

ऐसे नदी में फिर इधर खंबा गड़ा हुआ है दो.

काफी सारा सामान रखा गया है टेबल पे सोफे रेड कलर के सोफे है ऊपर से लाईट वगैरा भी जल रहा है काउंटर भी बना हुआ है।

ये किसी चीज का सोलर लगा रहे है जैसे लग रहा है निचे रखा हुआ है बिल्डिंग को बहुत शानदार--

जगा है ये सामने फील्ड है छोटे छो ग्रीन घास वाली फील्ड है ये और बहुतही अच्छा जगा लग रहा है.

और यहाँ व्हाईट कलर से अ स सूर्य के प्रकाश जैसा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे बहुतही सूंदर लग रहा है इस --

ये स्कूल में बच्चे प्रोग्राम कर रहे है भारत माता या सरस्वती माता का--

और बगल में भारत माता भी बने है जय हिंद--

ये पेट्रोलियम है इंडियन ऑइल यहाँ पे बोहोत सारी --

बोहोत सारे लोग खड़े है बोहोत सारी गाड़िया भी लगी हुयी है यहाँ पे।

और यहाँ पे इधर साईड में भी एक लो--

का बोर्ड लगा हुआ है निचे दो बंदे खड़े है.

मुलती जी या बैंड सेल्फ --

बैठी हुयी है कुछ लोग खड़े भी है।

ये एटीवाली बॉउंड्री साईड में दिख रही है डिजायनिंग वाला --

बोहोत सारे लोग भी है फील्ड पार्क में और इधर साफ सुधारा है।

और जेट मॅट बिछाये है यहाँ पे गुलदस्ता है रखा गया है और बोहोत सारे लोग बैठे हुए है।